यह तस्वीर एक चिड़ियाघर की है और यह पिंजड़े में बंद पड़ा हुआ शेर हैं।

जोकि फ्लावर के कलर कुछ वाइट ब्लू पिंक कॉम्बिनेशन में रखे गए हैं।

और इसके पीछे की और एयरोप्लेन लैंड हो रही है।

कपडे पहने हुए हैं। एक बॉलिंग कर रही है। दूसरी बैटिंग कर रही है।

यह तस्वीर एक नदी की है जो कि ऊपर की और ब्रीज़ बना हुआ है और नदी के अंदर --

यह तस्वीर एक कार सर्विसिंग की है जहाँ पे बहोत सारी कारें आयी हैं सर्विसिंग के लिए।